इस फोटो में पेड़ नजर आ रहा है।

इस फोटो मे घर नजर आ रहा--

इस फोटो में लड़का नजर आ रहा है इस फोटो में हॉल नजर आ रहा--

इस फोटो में नजर आ--

इस फोटो में फ्रिज नजर आ रही--

इस फोटो में पार्क नजर आ रहा है।